येअअ इंच जमीन नजर आ रही है फिर कुछ बोर्ड वगैरा नजर आ रहे है।

पर्दे व नजर आ रहा हैं टेबल नजर आ रहा हैं।

नजर आ रहा है एक कलर नजर आ रहा--

अ स्कूल दिखाई दे रहा है ईंट दिखाई दे रहा है सरिया दिखाई दे रहे है।

साममें आईना नजर आ रहा हैं झंडे नजर आ रहें हैं।

यहां पे कुछ हरा भरा झाड़ा नजर आ रहे हैं और आसमान नजर आ रहा है बादल वगैरह।

यहां पर मम कुछ बाइक नजर आ रही हे।

ओटी नजर आ रही है फिर एक आदमी नजर आ रहा है।

अह लाइटां वगैरह नजर आ रहे हैं काफी सारे कुर्सियां नजर आ रहे हैं अह आदमियां नजर आ रहे हैं।

तो फिर गेट नजर आ रहा है कुछ आदमी नजर आ रहे हैं।

और बोरोप्लस के कोलगेट के बिस्किटां वगैरह नजर आ रहे हैं।

यहां बेड़न हरे रंग के झाड़ा वगैरा नजर आ रहे--

एक शटर खुली है बाकी के शटर बंद है।